दी- दीवार घड़ी भी है और भी कई सारे प्रोडक्ट वहाँ पे हैं।

अभी एक दुकान है फिश का जिसमे बहोत-बहोत रंगबिरंगी साइज मे मछलिया रखी हुई है।

का तस्वीर है जिसमें एक लड़का खड़ा होकर जिस जिसके सामने बहुत सारे आदमी बैठे हुए हैं कोई माताए बैठे हुए हैं और लड़के छोटे-छोटे बच्चे बैठे हुए हैं।